यहां लाइटे दिखाई दे रही हैं।

यहां पे एक स्विच बोर्ड भी लगा हुआ।

बड़ा सा बोरा भी रखा हुआ है।

यहां कुछ पेड़ भी देख रहे हैं।

यहां मार्बल का टेबल दिखा रहा है।

यहां पे टेबल के ऊपर में दो स्पून रखें हुए हैं।

यहां पर कुछ अन्य बिल्डिंग भी दिख रहे हैं।

यहां ऐ_सी लगा हुआ है।

यहां एक व्यक्ति दिख रहा है।

यहां पे जिम के बहुत सारे उक्मेन्ट्स रखे हुए हैं।

खिड़की दिखाई दे रहा है।

यहां पे टेबल्स और चेयर लगे हुए हैं।

पैकेट्स को अलग अलग बंडलों में बांधा गया है।

सामने में कुछ गिट्टी भी है।

इन वस्तुओं के ऊपर एक टैग लगा हुआ है जिसपे उनका मूल्य लिखा हुआ है।

यहां और भी सेल्फी बनी हुई है।

सामने एक काउंटर भी दिख रहा है।

यहां पे दोनों व्यक्तियों ने टोपी पहन रखी है।

यहां पे सूखी पत्तियां पड़ी हुई है।

कुछ अंगूर गुच्छे में दिखाई दे रहे हैं।

एक लड़की अपने हाथ में मोबाइल पकड़ी हुई है।

यहां चांदनी से पूजा स्थल को सजाया गया है।

दीवार का रंग सफेद है।